बहोत सारे टेबल पर पानी की बॉटल सम्मान समारोह की चीजें रखी हुई हैं।

कुछ रूम हैं और डाइनिंग टेबल प्लस चेयर हैं।

एक गाड़ी खड़ी हुई है एक गाड़ी बन रही है।

और गाड़ियों के कुछ पर पुर्जे रखे हुए हैं

और पंखे लगे हुए हैं।

इसमें डी_जे साउंड रखा हुआ है।

सचिवालय के ऊपर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

रेलवे जंक्शन पर एक ट्रेन खड़ी हुई है लोकल ट्रेन ।

गुड्डे गुड़िया और खिलौने बहुत प्रकार के रखे --

यह लखनऊ मेट्रो स्टेशन है।

जिसमें एक आदमी जा रहा--

यह मारुति सुजुकी की एजेंसी है।

कुछ मारुति सुजुकी की जीप भी दिखाई दे रही हैं।

महिलाएं बच्चे और पुरुष खड़े हुए हैं।

पेड़ की पत्तियां जमीन पर पड़ी हुई हैं।

बच्चों के झूले हैं सीढ़ियां हैं फिसल पट्टी है।